यह बाहर की पीक हे साइड में दो पेड़ भी लगे हुए हैं एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है उसके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल हेगा।

एस.बी.आई का बैंक नजर आ रहा हैं बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आ रही हैं जो ब्लू कलर और वाइट कलर से पेंट हुई है बनी हुई है उसके बाहर एक जीप खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर एक दो पेड़ नज़र आरही है और बड़ी-बड़ी चट्टानें नज़र आरही है साइड में एक पेड़ लगा हुआ है और सूरज ढल रहा है यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा है ।

यहां से बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं पेड़ों के बीच में भी एक घर बना हुआ है जो हरा कलर का है यहां पर बहुत सारा--

उसके ऊपर बहुत सारी घास नजर आ रही है उधर साइड में भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

वो हेलमेट लगाए हुई इधर आ रहे है उनके पीछे एक चट्टान है वो हरियाली से भरी हुई है साइड में एक नदी नज़र आ रही है उसमे बहुत सारा पानी है।

पीछे अंदर बहुत सारे लोग नजर आ रहे है पेड़ भी दिख रहे है आसपास बहुत सारे पेड़ दिख रहे है एक पोस्ट भी लगा हुआ है अंदर बहुत सारे लोग--

यह घर टीन से बना हुआ है यहां टीन के नीचे तीन बच्चे खड़े हुए हैं ।

यह एक कपड़ों की दुकान है पीकलू स्पोर्ट की दुकान है यहां पर टी-शर्ट और कपड़िया टंगी हुई है।

दुकान की शटर पर फूल लटके हुए है दुकान के बाहर बहुत बड़ा पौधा लगा हुआ है दिया जल रहा है।

अंकल ब्लू कलर की चेक्स की वाली शर्ट शर्टिंग करके पहने हुवे हे ब्लू कलर की पेंट पहने हुवे हे नीले कलर के शूज पहेने हुवे हे गाड़ी पर हाथ रख के खड़े हुवे हे।

यहां पर एक कुर्सी बिछी हुई है लकड़ी की एक दुकान नजर आ रही है बाहर चप्पले पड़ी हुई है दुकान के अंदर बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं।